यहाँ देखिये सामने नदी है और अगल-बगल बहोत सारे घने जंगल जैसे पेड़ दिख रहे है और यहाँ पर देखिये कुछ समान दिख रही है।

इसके सामने लिखा हुआ है राजेश्वरी बुक और यहाँ पर देखिये बहोत सारी--

और इधर भी देखिये गमले रखे हुए है और वहाँ पे देखिये बहुत सारी कारे खड़ी है जो कि सफ़ेद मे है स्लेटी रंग मे है और ऊपर आसमान का रंग सफ़ेद है।

और यहाँ पर देखिये कुछ लाल रंग की दीवारे दिख रही है और अंदर से देखिये सूरज की किरणे आ रही है। --

यह सामने रेस्टोरेंट और यहाँ पर बहुत सारी कुर्शियाए मेज़ रखी हुई है जो की कुर्शी का रंग मेरून है। --

और यहाँ पर देखिये बगल मै टीवी लगी हुई है और जो दिवार का रंग मेरून है और वहाँ देखिये सफ़ेद रंग की एसी लगी हुई है सफ़ेद रंग की पंखे लगे है।

यहाँ देखिये सामने आप देख रहे है यह पे लाइट जल रही है और जहा की बगल की दिवार हैं जो सफ़ेद रंग से रंग की गयी है। --

और यहाँ पे देखिये अगल - बगल बहुत सारे घने पेड़ है और देखिये सामने बिल्डिंग भी दिख रही है यहाँ पर देखिये मोटरसाइकिले है ओह काले रंग की है।

इटे का घर है और यहाँ पर देखिये बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर निचे देखिये छोटे - छोटे पौधे भी उगे हुए है और यहाँ पर देखिये --

यहाँ पर देख रहे है जो इधर जमीन पे कुछ कुछ हरी-हरी घास उगी हुई है छोटी छोटी जैसी लग रही है काई दिख रही है।

की सामने दो बस खड़ी हुई है इधर देखिये टोटो भी जा रहा है और यहाँ पे देखिये दो तीन मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और यहाँ पर देख रहे है एकआदमी मोटरसाइकिल से जा रहा है जिसने सर पे हेलमेट पहना हुआ है और यहाँ पे देखिये --

और स्लेटी कलर में है और यहाँ पे देखिये बिच- बिच में गोले रंग का डिज़ाइन भी बनाया गया है और ये देखिये ये एक मेज के ऊपर रखा हुआ है और यहाँ की जो दीवारें हैं।

इ सामने दुकान है और यहाँ पर देखिये बहुत सारे सामान ऊपर टंगी भी हुई है और कुछ देखिये मेज पर रखी गयी हुई है।

और कुछ देखिये मेज़ शीशे बनाई गई है उसके अंदर भी रखी गयी है और ये जो मेज़ का रंग हैं वो सफ़ेद रंग का है और यहाँ की जो दीवाल मे। --

देखिये बहुत बड़ा सा मैदान है और यहाँ सिमिट का बैठने के लिए बेंच जैसा बनाया गया है और यहाँ पे जो दीवाल है वोह|।

बड़ी बड़ी पाइप लगाई गयी है पतली पतली और यहाँ पे देखिये पिले रंग से रंग किया गया है और दिवार का रंग काले रंग से किया गया है वहां देखिये खिड़की भी है। --

उधर देखिये कुछ पेड़ो की फूलवारी भी लगायी गई है और उधर देखिये लाल रंग से रंग भी किया गया है यहाँ पर देखिये दो आदमी खड़ा हुआ है और आसमान का रंग काला --

और यहाँ पर देखिये एक आदमी है जो कि कुरता झ झपा पहना हुआ है और उन्होंने गले में गमछा लगाया हुआ है।

और जीन्स पहनी हुई है और कुछ हाथ से कुछ अपने हाथ पे काम कर रहे है।

कार के सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है बोस्च कार सर्विस और यहाँ पर देखिये जो पट्टी दी गयी है दीवाल पे वो --

मेहरुम रंग से रंग की गयी है और यहाँ पे जो देखिये अ दीवाल का रंग हैं वो काले रंग से किया गया है और नीचे भी देखिये लिखा हुआ है सर्वे --

यहाँ देखिये बहुत बड़ा मैदान है जो कि बीच में पानी भरा हुआ है कुंड बना कर के और ये पूरा मिटटी जैसा मैदान दिख रहा है और देखिये अगल-बगल में देखिये बहोत सारे--

ये हॉल है और यहाँ पर देखिये कुछ औरते बैठी हुई है और कुछ आदमी बैठे हुए है और एक आदमी ने देखिये अपने सर पे गमछा बंधा हुआ है और शर्ट पेहना हुआ है।

और काले रंग का रंग किया गया है और उसके अंदर देखिए शीशा लगया गया है और अ देखिए जो अगल-बगल की दिवार हैं वो महरून रंग की गई हैं।

और पूरा दिवार सफ़ेद रंग से किया गया है और यहाँ पे तीन सीढ़ी बनी हुई है जो की मेहरून रंग से रंग की गयी है और इधर देखिये काले रंग के पत्थर बिछे हुए है अगल-बगल देखिये मिट्टी का रास्ता है।

अ बिजली की तारे गई है खम्भे सड़क अगल- बगल बहुत सारे पेड़ और नीचे देखिये छोटे- छोटे गंबे लगे हुए है और यहाँ पर पेड़ो की फूलवारी लगी हुई है और देखिये यहाँ पर --

दो खम्भे है जिसमें की अ ऊपर देखिये लाइट लगी हुई है और खम्भे का रंग है वो सफ़ेद है और यहाँ पर जो दिवार का रंग है वो भी सफ़ेद है और खम्भे के अंदर का रंग पीला है।